यह एक दो मंजिली मकान का दृश्य दिया गया ह--

यहां पे बहुत सारे पखल भी दिखाई दे रहे हैं।

अमने में एक पंखा भी लगाया गया है।

यह एक चाय दुकान का दृश्य दिया गया है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य दिया गया है। यहाँ पे तीन काउंटर बनाया गया है। जो की काउंटर पे बहुत सारे लोग खड़े है।

नीचे में टाइल्स भी लगी हुई है।

जिसमें शीशे का गेट लगा हुआ है।

उसके बगल में एक तसला भी रखा गया है जो कि उसके बगल में एक जग रखे हुए हैं।

यहाँ सामने मे एक काउंटर दिखाई दे रही है जो कि शीशे का बनाया गया है।

यह एक होटल का दृश्य दिया गया है।

सामने से जाली वाला गेट भी लगाया गया हैं।

यहां पे बहुत सारे कलम रखे गए हैं।

यह एक होटल का दृश्य दिया गया है।

यहां दो लाइट भी जल रहे हैं।

तीन जे_सी_बी दिखाई दे रही है जोकि चैन वाला है।

यह एक दुर्गा पूजा के पंडाल का दृश्य दिया गया है यहां पे बहुत सारे फूल से सजावट किए गए हैं।

यहां पे बहुत सारे बच्चियां लोग बैठकर पढ़ रहे हैं।

नीचे में भी पक्का का बनाया गया है।

यह एक व्यायाम शाला का दृश्य दिया गया है।

यह पे दो बाइक भी लगे हुए हैं।

नीचे में टाइल्स भी लगाया गया है।

यह एक पंडाल का दृश्य दिया गया है।

यहां एक बीच में खंभा भी लगाया गया है जो की नीले कलर का है।

यह एक पुराना स्कूल का दृश्य दिया गया--

उसके बगल में एक विद्युत सर्किट बनाया गया है।